अगर आप साइड में देखेंगे आपको पेड़ पौधे ट्रक्स दिखाई दे रहे होंगे।

जैसा की आप यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे जो एक बहोत बड़ी-सी नदी बनी हुई है और नदी में जो आप देख सकते है हल्का ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का व्यू आ रहा है चारो साइड देखेंगे तो आपको बहोत सारे----

यहाँ पे जी आपको दो तीन नाव रखी हुई दिखाई दे रही होगी घाट बना हुआ दिखाई दे रहा होगा पीछे आपको बहोत बड़े-बड़े मकान दिखाई दे रहे होंगे बहोत सारे लोग भी आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे।

और यहाँ पे आपको कुछ सूखी-सूखी लकड़ियां भी दिखाई दे रही हैं और नीचे आप देख सकते हैं। आपको ऑरेंज कलर का पत्थर भी दिखाई दे रहा है। सीढियां बनी हुई हैं और ऊपर भी आप देखेंगे तो आपको छोटे-छोटे घास फूस नजर आ रहे और कुछ सूखे-सूखे पत्ते भी नजर आ रहे सूखे-सूखे पेड़ --

हेलो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बहोत बड़ा सा क्लास रूम बना हुआ है। बहोत बड़ा सा एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है।